कुर्सी पे बैठा हुआ है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है।

वहा मस्जिद है। उसके बगल मे एक पेड़ पेड़ है। देखने मे बहुत सुंदर लग रहा है |

इसमें आइरन-मैन है जो कपड़ा आइरन कर रहा है।

टेबल है टेबल पे चादर बिछाया गया है उसी पे रख के कपड़ा आइरन कर रहा है बगल में मशीन रखा हुआ है ।

बैलून भी टंगा हुआ है बैलून का रंग नारंगी है --

एक आदमी बगल में मोटरसाइकिल लगा हुआ है ।